दो लैपटॉप है।

दो पिलर का पाइप लगा हुआ है बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा हैं उसके उधर घर मकान ।

ऊपर बहोत सारा एल.ई.डी. लाइट जल रहा है बई ये किसी शॉप का दो है।

इसमें बहोत सारे दवाई भरे हुए हैं।

ये कार गैरेज का फोटो है।

और दीवाल बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है इस पे कैप पे।

पीछे बहोत सुंदर बंगला बना हुआ है।

पौधा से बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा है विशाल-विशाल पेड़ दिख रहा है।

फ़ास्ट फ़ूड कैफ़े बेकरी करके बोर्ड लगा हुआ है ।